एक मेकेनिक गाड़ी को बनाते हुए नज़र आ रहा यह गैरिज का कार्य कर रहा है।

एवं गाड़ी को खड़ा किये है और कुछ लोग अन्दर की ओर जा रहे है एवं कुछ लोग गाड़ी मे बैठे हुए है।

यह किसी घर बन रहे बन रहे सामान का मिक्स किया जा रहे है जिसमे गिट्टी सीमेंट अदि को मिक्स करके घर मे बनाया जा रहा है।

यह कोई आधा अधुरा बना हुआ घर है जिसको पूरा करने के लिए--